एक छोटा सा कमरा है कमरे में एक चटाई बिछी है उसके ऊपर एक लाल कलर लहंगा और दुपटा रखा है अगल बगल कुछ और कपड़े रखे है।

एक बड़ा सा टेंट लगा है जो की लाल और सफ़ेद कलर के है एक कुर्सी रखी है लाल कलर की।